सब रंग बिरंगी फूल लगी हुयी है। उसके बगल में भी कई सारी फूल हैं और दीवाल के ऊपर लत्ती वाला फूल भी लगा हुआ है।

एक आदमी रास्ते से जा रहा है और एक आदमी बाइक से उधर कचरा वाला गाड़ी जा रहा है और रोड के साइड में पोस्टरे लगी हुई है।

यहा स्लाइडर लगा हुआ है जिससे सीधा पानी में आने के लिए एक बिल्डिंग के ऊपर मे लगा हुआ है इधर दो पानी में दो आदमी नहा रहा है।

और इधर बगल में पूरा दिवाल घेरा हुआ है दिवाल के ऊपर में झंडा लगा हुआ है और पीछे कई सारे ताड़ के पेड़ हैं।